और बहोत बड़ा पत्थर चट्टान है उसमे उसके नीचे भी बहोत जगह है आदमी लोग जाके वही पे घूम रहे है।

रोज कहीं वहीं पे खाने वाने का समान वगैरह मिलता है।

है फोटो में पेड़ भी है।

यह फोटो एक ठो जंगल का है जिसमें आसपास कई बड़े बड़े चट्टान हैं।

जिसमें की तीन चार ठो केबिन बना हुआ है सरकारी ऑफीसर बैठने के लिए--

और कहीं दरवाजा भी एक

ये फोटो एक ठो नदी का किनारे का फोटो है।

घोड़ा उस तरफ का सब बच्चे लोगों का सब खिलौने का आइटम रखा हुआ है।

ये एक स्टेशन का फोटो है रेलवे स्टेशन --

बहोत सारे किताब वगैरा रखा हुआ है।

ये एक ठो रेस्टोरेंट का फोटो है।

और ऊपर में कहीं अच्छा सा सुविधा बना हुआ है।

ये एक ठो स्विमिंग पूल का फोटो हैं।